टक्स टाइपिंग टक्स टाइपिंग के परिचय पर स्पोकन ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है
इस ट्यूटोरियल में आप सीखेंगे वाक्यांशों को टाइप कैसे करें
अपने शब्दों की सूची तैयार कैसे करें
टाइपिंग के लिए भाषा की स्थापना के बारे में जानकारी पता कैसे करें
यहाँ हम उबंटू लिनक्स 1110 पर टक्स टाइपिंग 180 का उपयोग कर रहे हैं
टक्स टाइपिंग खोलें
दश होम पर क्लिक करें
सर्च बॉक्स में टक्स टाइपिंग टाइप करें
टक्स टाइपिंग आइकन पर क्लिक करें
मुख्य मेन्यू में आप्शंस पर क्लिक करें
आप्शन मेन्यू प्रदर्शित होता हैअब वाक्यांशों को टाइप करने का अभ्यास करें
फ्रेज टाइपिंग पर क्लिक करें
टिचर्स लाइन में प्रदर्शित होने वाले वाक्य टाइप करें
इस मामले में यह है थे क्विक ब्राउन फॉक्स जंप्स ओवर थे लेजी डॉग
अब हमें अगला वाक्य टाइप करना होगा नहीं करना चाहिए160
Enter दबाएँ
अगला वाक्य प्रदर्शित होता है
अब हमें वाक्य टाइप करना सीखना होगा
आप अलग अलग वाक्यों के साथ अभ्यास कर सकते हैं
अब पहले मेन्यू में वापस जाने के लिए Esc दबाएँ
आप्शन मेन्यू प्रदर्शित होता है
अब हमें नए शब्दों और वाक्यों को जोड़ना सीखना होगा
एडिट वर्ड लिस्ट्स पर क्लिक करें
वर्ड लिस्ट एडिटर विंडो प्रदर्शित होती है
क्या हमें नया शब्द दर्ज़ करना चाहिए
वर्ड लिस्ट एडिटर विंडो में न्यू पर क्लिक करें
क्रिएट आ न्यू वर्डलिस्ट विंडो प्रदर्शित होती है
क्रिएट आ न्यू वर्डलिस्ट विंडो में लर्न टो टाइप टाइप करें ओक पर क्लिक करें
वर्ड लिस्ट एडिटर विंडो प्रदर्शित होती है
रिमूव पर क्लिक करके हम टाइप किए हुए शब्द या वाक्य मिटा सकते हैं
शब्द या वाक्य को सेव करने के लिए डोन पर क्लिक करें और आंतरिक मेन्यू पर लौटें
आप्शन मेन्यू प्रदर्शित होता है
आंतरिक मेन्यू से आप सेटअप लैंग्वेज आप्शन पर क्लिक करके भाषा स्थापित कर सकते हैं
आपकी चुनी हुई भाषा में टक्स टाइपिंग इंटरफेस और पाठ प्रदर्शित होंगे
फिर भी फिलहाल टक्स टाइपिंग अन्य भाषाओं में पाठों का समर्थन नहीं करता
अब खेल खेलें
मैन मेनू पर क्लिक करें
फिश कैसकेड बटन पर क्लिक करें
गेम मेन्यू प्रदर्शित होता है
खेल की शुरुवात करने से पहले निर्देशों को पढ़ लें कि इसे कैसे खेला जाए
इंस्ट्रक्शंस पर क्लिक करें
खेल खेलने के लिए निर्देशों को पढ़ें
जारी रखने के लिए स्पेस बार दबाएँ
अब टाइपिंग के अभ्यास के लिए आसान खेल चुनें
ईजी पर क्लिक करें
विभिन्न विकल्पों में शामिल विंडो प्रदर्शित होता है
विभिन्न विकल्प हैं कलर्स फ्रूट्स प्लांट्स आदि के नाम
कलर्स पर क्लिक करें
आसमान से गिरती प्रत्येक मछली में एक अक्षर भी है
अगर आप शब्दों को सही तरीके से टाइप करते हो तो शब्द लाल रंग में परिवर्तित होता है और गायब हो जाता है
फिर जैसे ही मछली गिरती है पेंगुइन उसे खाने के लिए दौड़ती है
अब अक्षर टाइप करें जो गिरने वाली मछली का हिस्सा नहीं है
अक्षर वैसे ही सफेद रहते हैं जो संकेत करते हैं कि आपको उन्हें सही तरीके से टाइप करने की आवश्यकता है
जब तक आप चाहो तब तक खेल ज़ारी रख सकते हैं
गेम्स मेन्यू में वापस जाने के लिए एस्केप बटन दो बार दबाएँ
यहाँ आप के लिए एक नियत कार्य है
कठिनाई स्तर को मीडियम या हार्ड में बदलें और खेल खेलते रहें
इसी के साथ हम टक्स टाइपिंग के इस ट्यूटोरियल के अंत में आ गये हैं
इस ट्यूटोरियल में हमनें वाक्यांशों को टाइप करना अपने शब्द जोड़ना और खेल खेलना सीखा
निम्न लिंक पर उपलब्ध विडियो देखें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
यह आईसीटी मानव संसाधन विकास मंत्रालय भारत सरकार के माध्यम से राष्ट्रीय साक्षरता मिशन द्वारा समर्थित है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
हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद